ये परांठा खाने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं जो कि बहोत ही यहाँ पे बहोत ही लाजवाब परांठा बनता है और ये परांठा सबको टेस्ट करना चाहिए ये परांठा बहोत ही बेस्ट है।

जैसा कि आप देख सकते है ये एक ए. टी. एम. है जिसका नाम है एनियन बैंक ए.टी.एम. । ये ए. टी. एम. इलाहाबाद में है जो कि लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है।

जैसा की आप देख सकते है। ये एक कपड़े की दुकान है। जो की बोहोत ही बढ़िया दुकान है। इस दुकान की बनावट बोहोत ही बढ़िया की गई है। देखिये यहां पे बोहोत सारे कस्टमर यहां पे कपड़े लेने के लिए।

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भैंस है जो की भैंस को यहाँ पे चारा दिया गया है और यह भैंस यहाँ पे चारा खा रहा है । यहाँ पे बहुत सारे भैंस हैं जो की यहाँ पोसे जाते हैं । यहाँ पे इन भैंसो को यहाँ पे देख-रेख की जाती है ।

देखिये देख सकते हैं की एक फेस्टिवल है। जो की यहां पे बोहोत सारे लोग है जो की डांस कर रहे है। लोग भी डांस कर रहे लेडीज भी कर रही लड़के बच्चे सब डांस यहां पे कर रहें हैं।